एक कार खड़ी है बहुत अच्छा दिख रहा है।

और यह कोई शादी है --

यहाँ पास गेट है और यहाँ पास हैं ।

इ ता घर दिख रहा है ऐ घर बहुत सुंदर दिख रहा है के और यहाँ प अ शेर का ऐ हैं ।

यहाँ दिख रहा है दिख रहा है ये और यहाँ पे थोड़ी --